कुछ झाड़ियां दिखाई दे रही है।

रहे है मुझे इस फोटो में दो आदमी दिखाई दिखाई दे रहे--

तोफ घर वे यही पे मुझे इस फोटो में --

कुछ पानी के कंटेनर दिखाइ दे रहे है।